ये गाड़ियों का शोरूम दिखाई दे रहा है बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है ।

शॉप टाइप की दिखाई दे रही है जो गाड़ी सुधारने वाली दिखाई दे रही है ।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

उम्म काफी सारे सजाबटी सामन --

काफी सजा हुआ दिखाई दे रहा है टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है कुर्सियां --